और दूर-दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है और इस पार्क के किनारे-किनारे बहुत बड़े-बड़े से छायादार पेड़ लगे हुए हैं | यहाँ शाम के टाइम --

जिसपे दो लेडिस बैठी हुई है और दूर-दूर तक सिर्फ आसमान पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।